यह बिल्कुल नई है इन पर पन्नी चढ़ी हुई है यहाँ पर सामने की तरफ हमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहें हैं।

क्यू कि आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर एक स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये स्टेशन अभी बिल्कुल खाली है। यहां पर हमे --

यहाँ पर हमें एक तख्त रखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें अलमारी में ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें काफी सारे गेट भी दिखाई दे रहें हैं।

जैसे की आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेज दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एक टोपी सी रखी है जिसे फूलों की मालाओं से और फूलों से सजाया हुआ है इसमें पत्ते भी लगे हुए --